इसमे काफी सुंदर लाइटे आगे वगैरा लगी हुई हैं जो काफी सुंदर लगी हुई हैं। इसके ऊपर काफी सुंदर डिज़ाइन की हुई हैं जो काफी अच्छी लग रही हैं जो काफी सुंदर लाइट काफी दिखने मे अच्छी लगी काफी लंबी भी हैं।